पहेन कर यहां से जा रही हैं यहां पे बहोत सारी है और अंदर बहोत सारे लोग--

यहां एक पार्क की तस्वीर है यहां पे दो कुत्ते बैठे हुए हैं।

यहां पे एक आदमी बेड पर लेटा हुआ है जिसके पैर में चोट लगी हुई है।

यहां पे बहुत सारे सीढ़ियां लगाई गई हैं।

ये यहां पे स्कैनर रखा हुआ है वहां पे एक पंखा--

शीशे के दरवाजे बहोत सारे लोग--

यहां पडदे भी लगाए गई। यहा पे बहोत सारी लाईटे भी लगाए गई है और यहा पे सीसे का दरवाजा लगा हुआ है।

और यहां पे बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई यहां पे सीढ़ियां भी बनाई हुई।

यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं।

भांस स्कूटी बाइक खड़ी हुई है यहां पे एक सफेद कलर की।

सीढ़ियां भी लगी हुई हैं यहां पे बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

यहां पे एक बेड भी रखा हुआ ऐ यहां पे ए--

गिला है यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे उग रहे है सामने बच्चे क्रिकेट खेल रहे--

यहां पे एक सोफा रखा गया हैं व दीवार पर बहोत सारे फूल और बैलून लगाए गए यहां पे एक लाइट लगाई गई हैं।